आये है और यह गलास बहुत सारे है।

यह प्लेटे टेबल पर रखी हुई है और यहां पर इन प्लेटों में खाने का सामान रखा हुआ है इन प्लेटों में एक एक चम्मच भी रखी हुई है।

इन छतरी का रंग काला है और मुस्लिम भाईजान बैठे हुए हैं सामने एक बड़ी बिल्डिंग है जो की बहुत लंबी है।